कुछ पर्दे भी दिख रहे हैं यहां दो विंडोज भी दिख रही हैं।

कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

कुछ पौधे भी दिख रहे हैं।

बहुत सारी मिट्टी दिख रही है।

जलती दिख रही है यहां वाइट कलर की दीवार दिख रही है यहां--